पिक्चर मे मुझे एक जीम दिखाई दे रही है उसके नीचे काफी सारे लड़के दिखाई दे रहे है।

सामने की तरफ मुझे कुछ लड़के दिखाई दे रहे है एक लड़का ने --

टेंट पर मुझे बैलून्स का डेकोरेशन किया हुआ दिखाइ दे रहा है इसमें मुझे एक बच्चा दिखाई दे रहा है जिसने ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ है ।

इस पिक्चर में मुझे एक जिम दिखाई दे रहा है इसमें एक लड़का भी दिख रहा है लड़का सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहा है ।

संतरा ग्रीन कलर की है और कुछ संतरा इसमें ऑरेंज कलर की दिख रही है। इसमें मुझे एक लड़का रहा है।

इसमे पेड़ भी दिख रहा है जो की ग्रीन कलर का है सामने मुझे खम्भा भी दिख रहा है।

कार का कलर मुझे व्हाइट दिख रहा है इसमें एक लड़का दिख रहा है जिसने ब्लू टी-शर्ट पहना हुआ है।

पीछे की साइड मुझे कुछ घर दिखाई दे रहे है इसमें मुझे पेड़ भी दिख रहे है ।